एक फिश का बहुत ही अच्छा पिक्चर ड्रा ड्रा किया हुआ है और साइड में स्कूल का अअ प्रमोट भी किया गया है । अच्छे से लिख--

और देखने मे ये एक टाउन है । यहाँ पे एक पानी टंकी है साइड में लगता है की टैक्सी --

ये एक --

और रात का समय है लाइट जला हुआ है । उम्म्म और साइड में बहुत अँधेरा भी दिखाई दे रहा है ।

टोकरी है शायद और यहाँ पे अअ बत्तख वगेरा दिखाई दे रहा है ।